यहां पे दो कर्मचारी ब्लू ड्रेस पहने हुए हैं जो कार की देख रेख कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट के पास शीशे लगे हुए हैं जहां से पहाड़ जैसा नजारा दिखाई दे रहा है।

उसके आस पास ढेर सारे लोहे का सामान रखें गए हैं और एक ने शर्ट और एक ने गंजी पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक ब्लैक कलर का बेड दिखाई दे रहा है।

पे ढेर सारे सामने लाइन से रखी गई हैं कुछ व्हाइट कलर में दिखाई दे रही हैं कुछ में ग्रीन कलर है थोड़ा थोड़ा।

कुर्सी के बगल में एक पिकअप है जो वाइट कलर में है और उसके बगल में छोटा सा ड्रम रखा हुआ है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसके पास एक बाइके रखी हुई है।

यहां पे कुछ ल ल लस्सी लटके हुए हैं जो पिंक कलर में दिख रहा है और ऊपर करकट लगा हुआ है।

के पास बोरे दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और दो आदमी के पैर दिखाई दे रहे हैं और उसमें चप्पल भी पहने हुए हैं।

कोई लोग बैठे हुए हैं यहां पे बहोत बड़े बड़े पह पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे घास भी दिखाई दे रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं जिसमें लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में संयोज विलेज लिखा हुआ नजर आ रहा है जहां पे सेविंग लाइफ एंड चेंजिंग लाइफ लिखा हुआ है।

और पास दिखाई दे रहे हैं यहां पे।

उसके बगल में ढेर सारे शटर दिखाई दे रहे हैं जो बंद है और सब में ताले लगे हुए हैं।

के सामने रवि शूट करके ढेर सारे पुतले वहां पे भी बनाए गए हैं जिन सब ने कपड़े पहने हुए हैं।